जीस पर बहुत से स्टूडेंट और लोग--

और बहुत बड़ा एक मिट्टी का रास्ता भी नजर आ रहा है।

सीढ़ियां भी नजर आ रही है ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए और ये बहु मंजिला बना हुआ है।

इनमें से एक बिल्डिंग नीले कलर के कांचों की बनी हुई है।

इस फोटो के अंदर एक आइसक्रीम पार्लर नजर आ रहा है इस आइस क्रीम पार्लर के बाहर वैनिला लिखा हुआ हैं।

नीले रंग की कार नज़र आ रही है और इस नीले रंग की कार के एक दरवाज़ा खुला हुआ है यह एक --

होटल जैसा एरिया नजर आ रहा है इस होटल एरिये में बहुत सारे ऊपर की तरफ झूमर भी लगाए गए हैं।

जहां पर एक कंप्यूटर रखा है और वहां पर सफेद रंग की ड्रेस पहनकर एक आदमी भी खड़ा है।